मूर्ति लग रहा है ये कोइ म्यूजियम का फोटो है।

और एक पार्क का चिन्ह मूर्ति है बहुत पुराना।

ये कोई पहाड़ का फोटो है यहां पे कपल्स हैं अपना इन्जॉय कर रहे हैं।

दीवार लग रहा है और बहुत सारा पेड़ है बहुत अच्छा मौसम घांस है हरी-भरी यहां पे और बहुत अच्छी-अच्छी चीजें है यहां पर।